हेल्लो गाइस ! यहाँ पे बहोत सारे नारियल के पेड़ नजर आ रहे हैं गाइस और बहोत बड़ा ग्राउंड है जो जंगल टाइप का दिख रहा है।

और यहाँ पर कुछ लोगदो व्यक्ति नजर आ रहे हैं जिसकी बॉडी पर कपड़े नहीं हैं और वो आधे पानी में उतर कर के हे गाइस --

और रंग-बिरंगी फूलो से डेकोरेट किया गया है। नीचे कुछ घासलेट भी लगाया गया है जो कि काफ़ी सुन्दर लग रहा है।

और यहाँ पे कुछ व्यक्ति जो भगवा कलर का ड्रेस पहन कर के और कुछ लोग खरा है कुछ बैठे हुए भी हैं गाइज जो कि काफ़ी सुंदर नजा़रा है गाइज ।

और वहाँ पे एक व्यक्ति चश्मा पहन के ग्रीन कलर का टी शर्ट और एक हाफ पैन्ट पहना हुआ नजर आ रहा है गाइस और साइड में --

बाहर का तस्वीर है गाईज और वहाँ पे (पर) बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पे (पर) दो लड़का साईकल पे (पर) बैठा हुआ नजर आ रहा है।

हेलो गाइज यहाँ पे कुछ पूजा पाठ का काम किया जा रहा है और यहाँ पे बहुत सारे --

लोग बेठे हुए हैंटेबल भी है और टेबल पर वाइट शीट --